फ़सल में कुछ पानीस भी दिखाई दे रहा हैं ।

रेस्टोरेंट में कुछ हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।

इसके अंदर बहोत सी मिठैया रखी हुई हैं।

चर्च के सामने हमें झीन के दो पेड़ नज़र आ रहे हैं।

बिल्डिंग के आजू -बाजु में पेड़- पौधे दिखाई दे --

कॉलेज का ग्राउंड नजर आ रहा है जिसमें बहोत से लड़के -लडकियाँ हमें दिखाई दे रहे हैं ।

और हमें एक हरा -भरा पेड़ दिखाई दे रहा हैं । फ़ोर व्हीलर के पीछे ह हमें --

पूल में हमें एक ब्लैक कलर की चेयर एक पानी की केन दिखाई दे रही है ऊपर एक टिन का --

शौपिंग मॉल में हमें कुछ लोग शो शौपिंग करते हुए नज़र आ रहे है इसमें हमें कुछ--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

यहाँ हमें एक बहुत बड़ी पत्थर की चट्टान दिखाई दे रही है।

डेली नीड्स की दुकान में हमें कुछ कोल्डड्रिंक एक फ्रिज के अंदर कोल्डड्रिंक की बोटल दिखाई दे रही हैं ।

क्लिनिक नजर आ रहा है जिसमें की हमें एक --

लोहे का गेट नज़र आ रहा है एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

क्रिकेट के ग्राउंड में हमें एक पिच दिखाई दे रही हैं।

यहाँ हमें एक फ़्रीज के अंदर कुछ डेयरीमिल्की की चाकलेट दिखाई दे रही है इसमें विभिन्न प्रकार की डेयरीमिल्की की चाकलेट हैं ।